तस्वीर में दो मूर्ति दिखाई दे रही है।

जिनमे में कई लोग व्यायाम कर रहे हैं।

साथ ही गेट नंबर चार भी लिखा हुआ है।

लड़की का दुपट्टा पारदर्शी व नीले कलर का है लड़की एक मशीन से कंचो को धो रही है।

जीप में एक व्यक्ति बैठा है जो शायद ड्राइवर है।

बीच में एक मीनार है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

तस्वीर पर चार खंबे दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक जिम को दिखाया गया है।

छत टीन की चादरों से बनी हुई है।

यह एक दुकान का अंदरूनी दृश्य है।